सामने एक अंकल साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं। जिसमें व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

यहाँ पे कुछ बालिकाएं बैठी हुयी हैं सभी ने ब्लू कलर के ड्रेस पहने हुए हैं| यहाँ पर रंगोली बनाया जा रहा है।

पीछे एक दीवाल दिखाई दे रहा है जोकि लाल उज्जले और ब्लू कलर से रंगा गया है। सामने एक गमला भी दिखाई दे रहा है।

जिसपे डब्ल्यू यू आर टी एच लिखा हुआ है। मशीन से एक पाइप लगी हुई है जो कि कार के अंदर डाला जा रहा है।